ऊपर साइड इलेक्ट्रॉनिक खंभे दिख रहे हैं बेट लाईट वाले नीले कलर के लाइट वाले नीले कॉलर का बोर्ड लगा हुआ हैसाइड में रोड दिख रही हैझाड़ लगे हुए हैं पार्किंग वाली जगह में इंसान चल रहै है।

बेर के पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई हैं बिल्डिंग के सामने एक खंबा लगा हुआ हैं खंबे के साइड से झाड लगे हुये हैं खुला आसमान धिक रहा हैं आउट साइड हरियाली दिख रही हैं ।

एक कुर्सी रखी हुई है जो की वाइट सिल्वर मेहरून कलर कि है और सामने साइड एक झार लगा हुआ है।

आँगन है साइड में छोटी सी पार्क है।

दो ठो पुतले दिख रहे है जिन्होंने हाथ में लकड़ी ले रखा है और पुतले के -- और गेट में दो ठो सींग दिख रही है हरियाली--

दिख रही है जो की काले कलर की कुछ बच्चे दौड़ लगा रहे है आई सेड एक बड़ा सा झाड़ दिख रहा है उसके निचे कुछ लोग बेठे है।